प्रोमोशन किए जाते हैं। यहां पे लोग फिट होने के लिए आते है।

इस पिक्चर में दिखाया गया है यहां पे एक वायरिंग हो रही है।

मॉल टाइप जैसा कुछ नजर आ रहा है।

यहां पे कुछ लोग अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं अपने पिक्चर के मुताबिक।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

यहाँ पर इसमे दिखाये गये है कि अलग अलग चार बॉक्स में अलग अलग डिजाइन के कुछ--

इसपे फूल भी लगाए गए--

इस पिक्चर में दिखाया गया है यहां पे एक बड़ी सारी फैक्ट्री नजर आ रही है जिसमें--

चम्मच और कुछ प्लेट मे कुछ वेजिटेबल जैसी--

यहां पर पेट के पत पॉकेट वगैह भी मिलते हैं पेडिग्री और पट्टे भी यहां पर--

इस तस्वीर में दिखाया गया है यहां पे एक फैक्ट्री का निर्माण किया गया।

इस तस्वीर में दिखाया गया हैं कि यहां पर एक डिजाइन से किए गए कुछ फ्रेम नजर आ रही है जिसमें अलग अलग टाइप के फोटो लगी गई--

आ पिले पिले ओर हरे हरे पेड पोधै नजर आ रहे--

इस तस्वीर में दिखाया गया यहां पे एक ट्रक खड़ा हुआ है।

टाइप के टमाटर दिख रहे हैं जिसके अंदर कुछ दाग और कुछ धब्बे नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में दिखाया गया है यह एक स्कूल की पिक्चर नजर आ रही।

उन्होंने ग्रीन रंग के बोर्ड दे रखी हैं।

टाइप वैरायटी नजर आ रही है जिसमें एक व्यक्ति उसको सेल कर रहा है।

यहां पर कुछ मशीन भी रखी गई हैं प्रेशर वाली।